यहाँ प काफी सारे बर्तन है और एक आदमी यहाँ पीछे तरफ खड़ा ऐ पीछे तरफ झुक कर कुछ काम कर रहा है।